इस फोटो में एक अलमारी दिखाई दे रही है जिसका कलर लाल है अलमारी में बहुत सारी बॉल रखी हुई है और कुछ कपडे रखे हुए है।

इस फोटो में मुझे एक चेयर दिखाई दे रही है जो की लकड़ी से बनी हुई है चेयर में बहुत डिज़ाइन बनी हुई है नीचे की तरफ दो महिलाएं बनी हुई हैं और--

बिल्डिंग है और उस वेन के पास मैं एक पेड़ लगा हुआ है और पास मैं ही कुछ पेड़ पौधे है और वेन मैं एक--

इस तस्वीर में हमें एक हिरन दिखाई दे रहा है उसका कलर ऑरेंज है उसकी आँखों का कलर ब्लेक है और वह एक खेत में खड़ा हुआ है पास में हमें घास दिखाई दे रहा है ।

लाइटे जलती हुई दिखाई दे रही है हॉल में ही ए.सी लगा हुआ है और सामने की तरफ स्टेज लगा हुआ है ।